पीछे कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं जो जिसके कि ऊपर--

इनके पीछे दीवार के पास दो साइकिल खड़े हैं।

एक कमरे के अंदर बनी हुई है।

सामने एक बैंक ऑफ़ बड़ौदा का--

जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा है।

सामने दो आदमी बैठे है और उनके सामने एक कार खड़ी है।

दोनों आदमी कार को साफ कर रहे हैं।

जिनमे की दो मोटरसाइकिल है पीछे--

ट्रैक्टर के साइडो में दो बड़े टायर लगे हैं आगे दो छोटे हैं ऊपर एक छतरी लगी है जिसका रंग नीला है।

सामने एक खाली जगह दिखाई दे रही है यह एक पार्क की तरह है।

इसमें बहुत बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं।

ब्लू रंग के हैं जिनके ऊपर जिओ लिखा है कुछ डब्बे ऑरेंज कलर के हैं रेड कलर के हैं।

वह किसी पहाड़ वाले एरिये में दिखाई दे रहे हैं।

जस्ट इट इट एक साइड में पंख लगा हुआ है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

क्योंकि एक हलवाई की दुकान है इसमें एक काउंटर में काफी तरह की मिठाई रखी हुई है।

अलमारी में भुजिया और अलग अलग--

पीछे एक लाल रंग की चेयर पड़ी है एक आदमी कुछ सामान लेकर आ रहा हैं बच्चे भी नहा रहे हैं।

कॉफी बनती हैं और अंदर काफी लोग बैठे भी हैं एक आदमी खड़ा हैं जो की--